सैलून है सुन्दर-सा यहाँ एक व्यक्ति बाल कटवाने के लिए आया है दाढ़ी बनवाने के लिए आया है और हम हमारे यहाँ भी है दो- तीन सैलून बाल --

कटवाने कटवाने के लिए हम भी जाते हे जिससे हमारा स्वाथ लाभ अच्छा रहता है और सर हलका रहता है| और बहुत ही अच्छा पर्सनालिटी दिखने में लगता है।

नदी है और नदी के ऊपर सब अपना खेल कूद रहे है और कुछ-कुछ कर रहे हैं और उधर अनेक प्रकार के पेड़-पौधे है जो की यहाँ एक दर्शनीय स्थल है। लोग यहाँ आवे और इसको इसका आनंद उठावे।